देख रहा है एक मंदिर मंदिर में दो लड़की सीडीओ चढ़ के जा रहे हैं इन्होंने पीले कलर खेती से एक नहर कलर का दोनों ने जींस पैंट पहना है|

मेरे को इधर एक महात्मा गांधी की स्टेच्यू दिख रहा है सिल्वर कलर पे एक झंडा दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे है पेड़ फल जमीन पे उगी घांस है दिख रही है फूल त्ते दिख रहे है।